किताब खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे नेलपेंट्स नजर आ रहे हैं।

पीछे में नीले रंग का दीवार दिखाई दे रहा है।